और चित्र भी बना हुआ नजर आ रहा है कुच मूर्ती के मुँह में दाँत बने हुए नजर आ रहे है ऊपर में सब चीज़ अच्छे से किये हुए है और चित्र भी दिख रहे --

इसके ऊपर में दो-तीन मंजिल का बिल्डिंग बना हुआ है जो की नीचे में पुलिस लिखा हुआ है और कपड़े के मूर्ति भी दिखाई दे रहै है किनारे में कुछ घने वनस सब भी दिख रहै हैं कुछ कपड़े के दुकान भी दिखाई दे रहै है।

यहाँ पे एक मैदान है जो की बहोत ही हरा-भरा घास दिखाई दे रहा है उसके किनारे में कोई बहोत ज्यादा झूला है और चलते हुए नज़र आ रही है और ऊपर में रेलिंग सब भी बने हुए है।

यह एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की इसके ऊपर में अलबेस्टर को भी रखे हुए है और छड़ भी निकले हुए नज़र आ रहे है और दरवाजा बड़ा है जो की खुला हुआ है।